ओ यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ दिखाई दे रही हैं और आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और आपको पेड़ भी बहुत सारे दिखाई दे रहे है और आपको बहुत सारे लोग और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

हेलो गाइस जैसा की आप यहां पे देख सकते है आपको एक रोड दिखाई दे रही --